यहाँ पर अच्छा लग रहा है | से बढ़िया वो किया गया है बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है वहां पर |

ये बंधन बैंक है और बंधन बैंक के पास मे ज ज ज ज्वेलर्स की दुकान भी यहाँ पर।

यहाँ पर नहर के पुल पर एक लड़का फ़ोटो खिंचवा रहा है। चश्मा लगा कर गुलाबी शर्ट पहनी हुई है। जीन्स की पैंट पहनी हुई है। लाल चप्पल पहनी हुई है।